शायद क्रूज उसे रस्सी से खींच कर ला रहा है।

लेट बाथ का गेट खुला हुआ है।

अंदर जाने के लिए गेट लगा हुआ है।

बड़ा सा फिरोजी कलर का गेट लगा हुआ है।

चादरों का शेड डला है जिसके नीचे एक बल्ब टंगा हुआ है।